ये किसी स्कूल के हॉल की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर बहोत सारे लड़के हैं जो टेबल कुर्सियां लेकर बैठे हुए हैं।

यहां पर एक लड़का है जो दूरबीन में कुछ देखता हुआ भी दिखाई दे रहा है उसके पास एक लड़का और--

सितार और पियानो बजाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इनके पीछे की ओर कुछ लोग खड़े हुए हैं जो तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं।

ये किसी जिम की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर बहोत सारी जिम की मशीने रखी हुई नजर आ रही है।

ये किसी जगह की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर एक बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ नजर आ रहा है।

ये किसी इंस्टीट्यूट की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे एक बड़ी सी टेबिल लगी हुई है।

ये किसी जिम की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर बहोत सारी जिम की मशीने रखी हुई नजर आ रही है।

यहां दुकानों के बाहर में किसी डम्मी ने जींस पहन रखी हैं किसी ने लोवर पहन रखा किसी ने स्कर्ट पहन रखी है।

इस स्विमिंग पूल के बाहर की और कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जो की खूबसूरत है।